जिनका कलर लाल जामुनी गुलाबी सलेटी और हरा दिखाई दे रहा है।

बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे है और टेंट का कलर लाल और नीला पीला दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें ट्रेन दिखाई दे रही है इसका कलर नीला दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक टी. वी और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

कहीं लाइट सभी जली हुई दिखाई दे रही है और तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग कंप्यूटर पर कार्य करते दिखाई दे रहा है।

जिस पर लोहे का नीला गेट लगा हुआ है और पास में बहुत-सी गाड़ियाॅं रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें केसरिया रंग आसमान दिखाई दे रहा हैनीचे बहती हुई नदी दिखाएं बहती हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे एक बड़ा सा फुवारा बना हुआ दिखाई दे रहा हैजिसके बीचो बीच--

इस चित्र में हमे डाकघर का बक्सा दिखाई दे रहा है जो की लाल या काले कलर से पुता हुआ है।

यह चित्र किसी पुरानी इमारत का दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्डिंग ।

नदी में बहुत सी नाव तैरते हुई दिखाई दे रही हैऔर अनगिनत लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक चार मंजिला इमारत दिखाई दे रहे हैजो सफेद और भूरे रंग से पुती हुई है।

इस चित्र में हमें बहुत से हिरण बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं धूप निकली दिखाई दे रही है।